रोड पर बहुत सारी महिलाएं और पुरुष चलते हुए नजर आ रहे हैं।

सामने एक पाइप भी लगा हुआ है जिसके बाहर बहुत सारे जल के फव्वारे बाहर निकल रहे हैं।

यह दिन का समय है और आसमान साफ नजर आ रहा है।

दुकान के ठीक बाहर गमले पर छोटे छोटे पौधे नजर आ रहे हैं।

पौधों पर हरा पीला फूल भी उगा हुआ है।

कार के उस पार लकड़ी से बनी हुई एक ऑब्जेक्ट है।

जो दिवार पर बहुत सारे मार्शल आर्टस की टेक्निक और योगा की टेक्निक पोस्टर की हेल्प से दीवारों पर लगाया गया है।

इसमें सामने बहोत सारे अलग अलग प्रकार की छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं।

पहाड़ों के बीचो बीच बहुत सारी चट्टानें भी दिखाई दे रही हैं।

सफेद कलर से पेंट किया गया है। ऊपर बहोत सारी सफेद लाइटें भी लगाई गई हैं।

यह एक दुकान की तस्वीर है और पीछे बहोत सामानों को बड़े व्यवस्थित ढंग से रखा गया है।

अलग अलग प्रकार के बिस्कुट चॉकलेट और भी बहुत सारी किराने की वस्तुएं मौजूद है।

यह एक सिनेमा हॉल की तस्वीर है जिसमें सामने--

स्क्रीन के ठीक बगल में रेड कारपेट बिछाया गया है।

पार्क पर बहोत सारे छोटे छोटे घास दिखाई दे रही है।

बहुत सारी ऑटो लगी हुई है ऑटो पर एक आदमी चढ़ते हुए नजर आ रहा है।

खंभा है उस पर बहुत सारी तार लटकी हुई नजर आ रही है।

दीवार के उस पार बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ लगाए गए है।

सामने बहुत सारे बच्चे खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं।

पीछे भी दो आदमी खड़ा है जिसके ठीक सामने एक बांस का डंडा लगाया हुआ है।

नीचे चिप्स सेव के पैकेट को बड़े ही अच्छी तरीके से रखाया गया है।

सामने सामान चेक कराने के लिए जगह बनाई गई है।

पीछे भी बोहोत बड़े-बड़े चट्टान हैं जिस पर बोहोत सारे छोटे बच्चे और महिलाएं बैठी हुई हैं।

इसके चारों ओर बहोत सारे छोटे छोटे पौधे लगाए गए हैं।

यह दिन का समय है और आसमान बिल्कुल साफ नजर आ रही है।

इसमें सामने दो आदमी नौका चलाते हुए अंदर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं।

बहोत सारे लोग खड़े भी हुए है और मेला का आनंद ले रहे हैं।

और एक कस्टमर भी आया हुआ है बाहर एक लाल रंग की --

सामने एक बोरा भी है पीछे के बिल्डिंग का रंग सफेद है।

दीवार पर एक पोस्टर लगा हुआ है जिस पर वोडाफोन टर्बोनेट फोर जी लखनऊ का सबसे तेज फोर जी लिखा हुआ है।

दीवार पर दो पंखा भी लगाया गया है।

ऊपर बहोत सारी पंखा और कैमरा लगी हुई नजर आ रही है।

यह एक नदी के घाट की तस्वीर है जिसमें घाट पर बहुत सारी नौका किनारे पर खड़ी हुई दिखाई दे रही है।